इस तस्मीर में हमें एक स्कूल का कॉरिडोर दिखाई दे रहा है जहाँ पे लाइन से हमें काफी सारे बच्चे --

इस तस्वीर में हमें एक म्यूजियम की लग रही है जहाँ पे सामने देकने पर --

उसके ठीक बगल में एक बड़ा-सा वृक्ष लगा हुआ।

ऊपर एक तार बांधा गया है जिसमे काफी सारे अलग-अलग सामान के शेशर भी रखे हुएं --

जहाँ पे हम अलग-अलग भगवानों की मूर्तियों को देख सकते हैं।

व आगे से सफ़ेद रंग का है।

उसके ऊपर काफी ऊँचे-ऊँचे व्रक्ष भी --

जोकि धुलने के लिए साफ़ होने और सुधरने के लिए आई हुई हैं।

ओनर दिखाई दे रहा है जो कि काले रंग की कुर्सी पे --

में एक झील दिखाई दे रही है जिसका पानी काफी नीला है और साफ़-सुत्रा है।

चांदी के सिंघासन पे विराजमान देख सकते है।

जोकि प्लास्टिक वाली पन्नी से पूरी तरीके से कवर है।

यह तस्वीर एक म-मंदिर वाले घाट वाले इलाके की है जहाँ पे हम --

यहाँ पे काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है।

जिन पे हरा नीला लाल रंग का पेंट है।

लेहेंगे पहने हुए हैं और वो नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हिस्से से ली गयी है जहाँ पे हम एक नीले और लाल रंग के पेट्रोल पंप का बोर्ड भी देख पा रहे हैं।

यहाँ ठीक देखने पे हम सामने देखने पे एक सुनहरे रंग का वृक्ष भी दिखाई --